यहाँ एक बहोत सुंदर-सुंदर प्रतिमाएँ बनी हुई है कुछ चौरन्ग बने हुए है भगवान की मूर्ति हैं ।

डेकोरेशन किया गया है रेड कलर की चेयर है और हल्के क्रीम कलर के पर्दे लगे हुए हैं ।

यहाँ एक मंदिर दिख रहा है मन्दिर जो की ओरेंज कलर का है इसके आस पास पेड़ भी दिख रहे है।

ऊपर बहुत सारे बलून दिख रहे हैं।

टेबल के ऊपर कुछ खाने की चीजें रखी हुई है एक रुमाल भी हैं ।

यहाँ चढ़ने की कुछ सीढ़ियाँ भी दिख रही है कुछ लोग सीढ़ियों से उपर जा रहे है।

एंड वाइट कलर का इसमें पुताई की गयी है कुछ लड़कियों ने यहाँ मास्क भी लगाया हुआ है।

का कलर येल्लो दिख रहा हे।

यहाँ दीवार में एक बोर्ड लगा है बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है पतंजली टेस्टी नमकीन --

मंदिर में पेन्ट किया गया है क्रीम कलर का उसमे कुछ रेड कलर की पट्टी से भी वर्क किया गया है।

पौधों में दवाईयां छिड़क रहा है कुछ पत्तियां हरी दिख रही है तो कुछ ब्लैक दिख रही है।

दीवार में कुछ पोस्टर भी चिपके हुवे दिख रहे है।

सामने में एक फॉर व्हीलर भी खड़ी हुई है।

यह एक जिल्ला पंचायत है जो वाइट कलर की ब्लीडिंग दिख रही है।

ऑटो का कलर ब्लैक दिख रहा हैं ।

बै टेबल लगाये गये है टेबल के साईं ब सामने में बहुत सारी चेयर रखी हुई हैं ।

बिल्डिंग का कलर क्रीम कलर का दिख रहा हैं ।

यहाँ अधिकतर ब्लू ब्लू ब्लैक कलर के जीन्स दिख रहे हैं ।

और यहाँ लाइटिंग पिंक ग्रीन कलर की दिख रही हैं।

जैसे यहाँ पपाया तरबुज ग्रेप्स एप्पल सभी प्रकार के फल यहाँ रखे हुए हैं ।

उसके आस पास ब्लैक कलर का राउंड है निचे एक बहुत सुंदर लाईट लगी हुई है।

मकान के काम में स्लैप ढली हुई है कुछ खंभे दिख रहे है खंभे के उपर लोहे की रॉड दिख रही है।